शादी का स्टेट है जो कि इसपर जयमाला पड़ती है। मम्म दो कुर्सियां लगाई गई हैं।

पेड़ पौधे भी लगाये गए हैं जो कि इनसे छाया प्राप्त हो स --

जैसे कि मिर्ची हो गई लाल मिर्ची हो गई आचार वाली मिर्ची हो गई। गोभी है आलू है जो कि हम काफी चीज बनाते हैं। सब्जियां खाने के लिए होती हैं। हरी सब्जी से हमें आयरन प्राप्त होता है।

और इससे काफी पानी आवश्यकता पड़ती है।

और योगा भी किया जा रहा है। काफी अच्छी चीज है क्योंकि बच्चे इनको कुछ कुछ सीख मिलेगी और इनसे बच्चे --

जो कि काफी अच्छा है और बढ़िया है जो कि इसपे सोफा भी बड़ा हुआ है। इसपे मेज भी रखा --